यहां पर सभी लोग आकर अपनी-अपनी गड़ियाँ खड़ी करते हैं और यह यहां का कोई चार्ज भी नहीं है। यह यहां पर सभी की गड़ियां बहोत ही सेफ हो जाती हैं।

इस फ़ोटो में हम देख पा रहे हैं यहां पर जलेबी रखी हुई है। सभी को जलेबी बहोत ही पसंद होती है।

यहां पर एक लाइट भी जल रही है और यहां की कुर्सियां भी बहोत ही खूबसूरत हैं। यहां पर एक डचबिन डसबीन भी रखा हुआ है और यहां पर छोटी-छोटी घासें भी हैं।

यहां पर एक लड़का भी खड़ा हुआ है जो फोटो खिंचवा रहा है। यहां के जंगल बोहोत बड़े-बड़े हैं और हरियाली भी बोहोत है।

यह एक गार्डन का फोटो है। इसके पीछे एक बोहोत ही खूबसूरत बिल्डिंग भी बनी हुई है। इस गार्डन में बोहोत ही सुंदर फूल लगे हुए हैं।

और यहां पर एक लाल कलर की लगी हुई है। यहां पर बोहोत सारे छोले भी रखे हुए हैं। यहां पर प्याज कटी हुई रखी हैं।

और यहां पर हरी मिर्चे भी रखी हुई हैं और यहां पर बहोत सारे चम्मच भी --

यह एक योगा क्लास लग रही है। यहां पर बोहोत सारे लड़कियां और लड़के सभी योगा कर रहे हैं। यहां पे साइड मे दो लड़कियां घोड़ी बनी हुई हैं।